और बाहर कुछ पौधे भी रखे गए हैं हरियाली के लिए।

और पीछे कुछ बोर्डो पर बहोत कुछ लिखा गया है।

और कुछ लोग भी खड़े हैं और कुछ लोग अपनी साइकल और मोटर साइकिलों पर जा रहे है।